अंदर एक एक्टर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति नीले कच्छे में नजर आ रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक सांवला व्यक्ति सेल्फी ले रहा है।

कला भिवानी की दिखाई दे रही है।

इसके बाहर बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की नजर आ रही है यहां पर तीन सफेद रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही है।

जहां बाहर दिव्या ज्योति जागृती संस्था लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक व्यक्ति के हाथ की नजर आ रही है वे यहा पर एक डायरी भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर फिफ्टी परसेंट ऑफ भी नजर आ रहा है।

घर के बाहर एक डिजाइन भी बना है।

यह तस्वीर एक केमिस्ट्री लैब की नजर आ रही है। दीवार पर मॉडर्न प्रिडिक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

एक लड़का कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ कार्य कर रहा है वे दूसरा बिकर से मेजरिंग सिलेंडर में कुछ डालता हुआ--

यहां एक माँ सरस्वती की फोटो भी नजर आ रही है।

यहां पर एक स्पीकर भी बजाने वाला दिखाई दे रहा है।

व बहोत सारे एक्वेरियम भी दिखाई दे रहें हैं।

पक्षियों को डालने के लिए दाने भी नजर आ रहे हैं।